डस्टबिन बच्चों की चेयर गद्दे और बहोत सारा फर्नीचर का सामान और प्लास्टिक का सामान भी रखा हुआ है।

यहां पर बजाज फिनसर्व की तरफ से इ_एम_आई भी बिल्कुल इ_एम_आई पर भी हम सामान ले सकते हैं।

इस पर लाल कलर और पीले कलर से पेंट किया गया है।

इस चित्र में हमें सामने की तरफ दो सीढ़ी दिखाई दे रही है जिन्हें हम एस्केलेटर भी बोलते है।

सामने ही हम एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जिस पे सफेद कलर का पेंट किया गया है और एक दरवाजा खुला है।

इस चित्र मे हमे स्कूल के कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

नीले कलर की कमीज पहने हुए हैं और ग्रे कलर की पैंट और स्कर्ट पहने हुए है।

इस चित्र से हमें पता चलता है कि यह तालबेहट का किला है जो ललितपुर में स्थित है।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

यहां पर बहोत सारा खाने पीने का सामान रखा गया है जो की माता पर चढ़ाया गया है।

यह तस्वीर मिथिला बुक सेंटर की है जहां पर हमें किताब मिलती हैं।

यहां पर एक गेट बना हुआ है जो की पीले कलर का है।

इस तस्वीर में हमे हरे कलर के कुछ पिलर दिखाई दे रहे है।

यहां पर हमें कुछ लाल कलर की कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में झोपड़ी की तरह घर बनाए गए हैं जो कि त्रिभुज के आकार में प्राली से बनाए गए हैं। --

पास में ही एक चेयर रखी हुई है और पास में ही एक पाइप है जो कि काले कलर की है।

इस चित्र में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर पीले कलर के पेंट किया हुआ है।